यह एक बैटरी का दुकान है यहां पे छोटा सा बैटरी का दुकान बनाया गया है।

और आगे दरवाजा कांच का लगा हुआ है और अंदर एक लाइट जल रहा है।

यह एक बहुत बड़ा पार्क है पार्क के बीच मे --

थोड़ा ईंटा जोड़ के ऊपर एक मशीन रखा गया--

अलग-अलग वैरायटी का सामान है और अलग-अलग सामान--

और काउंटर के ऊपर ग्लास लगा हुआ है नीचे साइड टेबल पे भी एक कंप्यूटर रखा गया है वहां पे एक आदमी कुर्सी में बैठा हुआ है।

जाली लगा हुआ है और अंदर अंदर पर्दा लगा हुआ है।

यहां पे स्टैंड बना के बहुत सारा टाइल्स खड़ा किया गया है।

कचौड़ी के ऊपर दही डाला गया है डाला गया है और बहोत चीज डाला गया है और चटनी तो --

और आगे ही साइड में बीच में एक गुड़िया खड़ी की गई है और गुड़िया के--

रुमाल-रुमाल बहुत सारा दिख रहा है और एक आदमी बाल झाड़ते हुए दिख रहा है।

यहां पे फुटबॉल बहुत सारा रखा गया है काउंटर के ऊपर--

यहां पे चारों तरफ से पर्दा लगाया गया है पर्दा के ऊपर एक-एक लाइट लगाया गया--

और यहां पे अलग-अलग कलर का बीच में फल फूल लगाया गया है।

खड़ा हुआ है और नीचे का साइड में प्लेस्टर हो रहा है और दो जाली लगा हुआ है ईटा दिख रहा --

और उसके बगल में भी एक घर बनते हुए दिख रहा --

और अ अ बाहर साइड में दो बाइक खड़ा हुआ है।

पीला कलर का है और उसका ब्लू कलर का--

यह एक नदी का किनारा है यहां--

यहां पे एक आदमी बहुत सारा कैरेट रखा है कैरेट के अंदर केला--

और ऊपर से बहुत सारा लाइट चल रहा है और बहुत सारी--

और और नए वाले पुराने वाले का कुछ नहीं हुआ है पुराना वाला उसके आगे खड़ा हुआ है देखने में अच्छा लग रहा है।